और बैंक काफी साफ-सुथरा जगह पे बनाया गया है।

और यह प्लेटफोर्म बहुत लम्बी है। यह प्लेटफार्म --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

यह बिल्डिंग के आगे एक एक युवक का कैमरा स्टैंड ले के कुछ रिकॉर्डिंग कर रहे हैं।

यह काफी अच्छी और स्वच्छ जगह पे है और यहाँ एक पोस्टर दिखाया जा रहा है। यह पोस्टर में अच्छी तरह से दिखाई देंगे।